यहाँ पर दो ई-रिक्शा है जो की पट्टी पैक है और एक आगे है एक पीछे है दोनों ब्लू कलर की है और झाड़ फूल नजर आ रहे है रस्ता नजर आ रहा है।

मल्टी नजर आ रही है और बहुत सारी टू व्हीलर --

गार्डन नजर आ रहा है आसमान नजर आ रहा है फूल नजर आ रहै हैं और बीच में से रास्ता कटा हुआ है सामने जो मल्टी है वो ग्रीन कलर की है।

आसमान नजर आ रहा है गेट नजर आ रहा है टू व्हीलर नजर आ रही है।